इस घर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और यह घर बहुत ही बड़ा है।

ये घर है इस घर के बाहर दो टोटो रिक्शे खड़े हैं।

और यहाँ बहुत सारे लोग इन सामानो को खरीदने के लिए आते है यह दुकान एकदम सड़क के किनारे पर है।

इस संस्थान में महिलाओं को बहुत सारी मदद मिलती है और यहाँ पे महिलाओं के सारे काम होते है।

एक दुकान है | इस दुकान में बहुत सारे कुर्सियां बाल्टियां और बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

पहाड़ जैसे बनाये गये हैं।

और इस पार्क में एक बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगाए गए हैं।

यह जिम क्लास बहुत ही बड़ा है और यहाँ लोग सारे अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए आते हैं।

यहाँ एक मेला लगा रेहता हैऔर इस मेले को सोनपुर मेला कहा जाता है।

यहां पे दो औरते इन ड्रेसों को बांटने के लिए आये हुए है।

इस मंदिर के चारों ओर बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और इस जगह के चारों ओर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।